इसके अंदर एक हमें और चौखट दिखाई दे रही है। इसके अंदर शायद दरवाजा है।

पीले रंग की बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारे शीशे लगे हुए--

यहां एक अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप नजर आ रही है और शोरूम कह सकते हैं इसे--

फ्रीज जो है बहोत सारी कंपनी की है बहोत सारे कलर्स मे है।

यहा हमे पारक के बाहर का दृश्य नजर आ रहा है।

सामने कुछ बाइक खड़ी हैं और बाइक के ऊपर एक हेलमेट भी टंगा हुआ है।

इसकी सफाई चल रही है इसलिए इसमें नीचे का सारा फ्रेम दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक स्टेडियम नजर आ रहा है जिसमें पिंक कलर का बना हुआ है।

क्लास का डोर बना हुआ है जिसके ऊपर पी_क्यू क्यू जो हैं क्वीन के नाम से एक क्राउन बना लोगो बना--